ये अपना पार्किंग लगा के रखे हुए हैं ऐसा दिख रहा बहोत सारे गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

ऐसे लेट के योगा कर रहे हैं और सभी के पास सरकी भी लगा हुआ--

अभी तो तैयारी चल रही है ऐसा दिखाई दे रहा--

बड़ा बड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा है पूरा तरफ से ये चारों घेरे हुए लग रहे--

सामने दो चेयर दिखाई दे रहे हैं दो स्टूल दिखाई दे रहे हैं खिड़की भी लगा हुआ है दो रूम दिखाई दे रहे हैं बट यहां पे कोई--

और बहोत साफ सुथरा दिखाई दे रहे--

यहां पे सामने गौशाला दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सारे गायों को--

उसकी मम्मीया है जो है सामने बैठी हुई दिखाई दे रही है सभी शूज पहने हुए हैं कोई पर्सन --

कोई मार्केट दिखाई दे रहे बहोत भीड़ लगी हुई है यहां पे मांस मटन कटते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे--

यहां पे भरतनाट्यम करते हुए पांच लड़कियां दिखाई दे रही है जो रेड कलर के सामने वाली पहनी है सेकंड ग्रीन --